celldesigner installation के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगें : windows operating system पर celldesigner 43 download एवं install करना
इस tutorial को record करने के लिये हम windows xp एवं celldesigner version 43 का प्रयोग कर रहे हैं
कृपया ध्यान दें कि celldesigner linux एवं mac os x पर भी कार्य करता है
कृपया ध्यान दें कि यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर install करना चाहते हैं तो आपका admin यूजर होना आवश्यक है
आप www celldesigner org website से celldesigner download कर सकते हैं
home page पर आपको downloads टैब मिलेगी इस पर click करें
यह आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा नीचे scroll करें
download celldesigner पर click करें
नीचे scroll करें download शीर्षक के अंतर्गत चार links मौजूद हैं
पहले link यानी download for windows 32 bit पर click करें
यह आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा
यहाँ पर दो विकल्प हैंregistered user और first time user
चूँकि अभी आप first time user हैं
first time user पर click करें continue पर click करें
अब आपको अपने विवरण भरने हैं
मैं अपने विवरण भरता हूँ
एक बार विवरण भरने के बाद नीचे scroll करें और download पर click करें
आपको केवल इस जानकारी को एक बार भरना होगा
बाद में यदि आप कोई नया version install करते हैं तब आपको registered user पर click करना होगा
email address एवं password type करें तथा आपको इस तरह सेटअप फाइल मिलेगी
अब save file पर click करें
इससे setup फाइल डाउनलोड होने लगेगी इसमें कुछ minutes लगेंगें
downloading पूर्ण होने के बाद setup file खोलें
इस पर click करें run पर click करें
next button पर click करें
i accept the agreement विकल्प चुनें
next button पर click करें
अपने computer पर celldesigner install करने के लिये एक लक्षित folder चुनें
next button पर click करें
next button पर click करें
installation प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए finish button पर click करें
आपको कुछ निर्देश मिलेंगे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें
और फिर ok पर click करें
अब सेलडिज़ाइनर खोलने के लिए desktop पर shortcut celldesigner icon पर click करें
यह celldesigner interface है
आने वाले tutorials में हम menu bars tool bars एवं विभिन्न panels के bars में सीखेगें
यह celldesigner की मदद से खींचा गया एक model है
यहां यह substrate enzyme के साथ बंधन बनाता है और enzymesubstrate complex बनता है यह substrate उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है
अब इस model को सेलडिज़ाइनर में देखते हैं
हम celldesigner का उपयोग करके कई ऐसे जैविक networks draw कर सकते हैं
यह जाँचने के लिए कि installation ठीक से हो गया है
सेलडिज़ाइनर window पर वापस जाएँ
यहाँ सिर्फ एक protein जोड़ते हैं
file में जायें new पर click करें
मैं इसे trial name दूंगी ok पर click करें
मैं protein चुनती हूँ
यहाँ click करें और इसे a name दें
और ok पर click करें
अगले tutorial में हम इसके साथ आगे बढ़ेंगें और यह model बनाएंगे
सेलडिज़ाइनर के installation का यह spoken tutorial यहीं समाप्त होता है
इस tutorial में हमने सीखाwindows operating system पर सेलडिज़ाइनर 43 download एवं install करना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
spoken tutorial project teamकार्यशालाएं आयोजित करती है तथा online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spokentutorial org पर संपर्क करें
spoken tutorial project talk to a teacher project का एक भाग है यह nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro लिंक पर उपलब्ध है
यह ट्यूटोरियल this अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद